ये एक शटर है जिसपर अक अचीव कॉमर्स एकेडमी लिखा हुआ है ये एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स हैं।

ये एक पहाडों बीच नदी बनी हुई है यहाँ बहोत सारे वृक्ष लगे हुए है ये एक तालाब है जिसमें नीले कलर का पानी भरा हुआ है ओर एक --

यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है वो नवोदय विद्यालय का पोस्टर है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी यहाँ पर एक मोटर बाइक खड़ी हुई हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर मंडला महल छत्तीसगढ़ पलटन महल लिखा हुआ है।

कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियर विभाग है यहाँ पर स्कूल बना हुआ है जहाँ पर ब्लू कलर की लाइनिंग बनी हुई है बहुत सारे वृक्ष लगे हुए है।

आपको बादल भी नजर आ रहे हैं एह एक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियर विभाग की बिल्डिंग है।

यहाँ पर एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने लाल कलर कि टी शर्ट पहन रखी है और अंदर फूलो से सजावट की गई है और ये बहोत बड़ा शोरूम है।

ए सफेद कलर का मन्दिर है ए बहोत बड़ा मन्दिर दिखाई दे रहा है इसमे गुम्मट बनी हुई।

एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर कुछ भी लगे हुए है एक बांस की लकड़ी भी दिखाई ---

एक नदी है नदी के किनारे पर कुछ पौधे लगे हुए है और वृक्ष भी दिखाई दे रहे है।